एक ये हॉस्पिटल टाइप हॉस्पिटल है जो की एक नर्स उधर जा रही है पैदल-पैदल और दीवाल में गुब्बारा गुब्बारा बांध के टांगा गया है और इधर भी लेडिस लोग है जो मास्क वास्क लगा के खड़े है।

पूरा हरा-हरा उगा हुआ हैं इसमे--

इधर भी खड़े हैं बस और बड़ा- सा एक बिल्डिंग का ओ बना हैं।